यह एक कार की दृश्य है अगल बगल बहुत सारे सामान भी नजर आ रहे हैं।

नज़ारे है पीला पीला प्लास्टिक भी है और बहुत सारे घास भी नजर आ रहे हैं।

एक मंदिर का दृश्य है जहां पे बांस नजर आ रहे हैं और मंदिर के गेट लोहे के मदद से बनी हुई है और सजी हुई है और रेड कलर के ह--

दो झूमर भी है जो रेड और पीला है।

व्यक्ति बाहर को आ रहे है एक स्कूटी भी है।

रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर एक कई पोस्टर लगे हुए हैं एक साइकल है एक रिक्शा है।

दु ठो चप्पल भी दिख रहे हैं और डब्बे में भी है।

यह एक मैरिज हॉल के दृश्य है जहां पे बहुत सारे सोफे भी लगे हुए हैं जो व्हाइट कलर हैं।

फ्लावर बहुत सारे सजे हुए हैं एक गोल से लाइट दिख रही है।

ये एक बालू का दृश्य है जो उज्जर उज्जर बालू है और बहुत सारे बालू है।

यह एक सामूहिक विवाह का दृश्य है जहां पे मिट्टी के कटोरे नजर आ रहे हैं।

चेयर भी लाइट भी फोटो भी खींच रहे हैं और मंदिर भी नजर आ रहे हैं।

बाल्टी भी नजर आ रहे हैं और बहु दो जार भी नजर आ रहे हैं।

इसका दृश्य है जहां पे बहुत सारे सूटकेस नजर आ हैं।

पीछे की ओर एक ब्लू कलर का करकट नजर आ रहे है।

शीशे की ओर तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं एक एक व्यक्ति फोटो खींच रहे हैं एक--

ई वाला खिड़की में जाले लगे हुए हैं नौ दस भी लिखे हुए हैं ऊपर की ओर खिड़की के ऊपर एक बोर्ड टंगे हुए हैं जो मैरून कलर के हैं।

एक दीवाल पे कुछ लिखे हुए कुछ चिपकाए हुए हैं।

ये एक दुकान का दृश्य है जहां पे बहुत सारे रैक नजर आ रहे हैं जो लकड़ी के मदद से बने हुए हैं।

टाइल्स भी नजर आ रहे हैं दिवाले भी नजर आ रहे हैं।

बाहर पोस्टर लगे हुए हैं पोस्टर पे लिखा हुआ है तेजा ।

एक स्लेट भी नजर आ रहा है जिसमें पेटी ट्रे दस अंडा लिखा लिखा हुआ है।

काला कोट नजर आ रहा एक टोपी भी लगा रहे है एक शर्ट भी है।